मुझे इस तस्वीर में एक डियर दिखाई दे रहा है उसके बगल थोड़ा सा पानी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है।

बिल्डिंग में दो बरे बरे बैनर लगाया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में दो मनुष्य दिखाई दे रहा है और पीछे में बहुत सारे मनुष्य--

मुझे इस तस्वीर में एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है।

वुड और आयरन से बना हुआ बेंच दिख रहा है।

नीचे में फिश की भी है।

पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे से पेड़ सब भी हैं।

पहाड़ के नीचे छोटे छोटे से कैंप लगाया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक बार्बर शॉप दिखाई दे रहा है।

बैक साइड में ब्लू और येलो कलर का लाइट भी है।

और पीछे में ईटा से बनाया हुआ घर भी दिखाई दे रहा है।

टैंक की कलर व्हाइट और ब्लू में है।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

चर्च के बाहर कारपेट बिछाया गया है।

बहुत सारे मनुष्य ने कुछ प्रोग्राम परफॉम किया गया है।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

छोटे छोटे से छेद भी दिखाई दे रहा है।

सूखे सूखे ग्रास सब भी है।

ब्लैक बोर्ड में एक नोटिस पेपर चिपकाया हुआ है।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

व्हाइट कलर की हैंड बैग भी दिखाई दे रहा है।

मनुष्य भी दिखाई दे रहा है दो मनुष्य का फेस ब्लूर किया गया है।

बहुत सारे मनुष्य काम करते दिख रहा है और एक मनुष्य के हाथ में पेपर है।

मुझे इस तस्वीर में एक घर का कंस्ट्रक्शन करते हुए दिखाई दे रहा है।

उसने व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई है।

पीछे में बाल का पिक्चर भी दिखायी दे रहा है।